स्टूडेंट यहां कंप्लीट करने के लिए आय होंगे ऐसा लग रहा है देखने पर प्रिंसिपल की खड़ी खड़ी होगी है। यहां पर ऐसा लग रहा है देखने से--

कुछू बस्ती या गांव भी हो सकता है बहुत स्मार्ट लग रहा है यहां पे ये फोटोग्राफी तब ली गई होगी जब कोई मानव बड़ा ऊंचाई पर होगा तब बहुत ही सुंदर फोटो--

देखने से ऐसा लग रहा हैकि जैसे शादी का बंदा लोग हैं यहां पे और साइड चेयर टेबुल एकदम लगे हुए हैं अच्छे से गुलदस्ता भी रखा गया है।

उम्म इसमें बहुत हि सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है यहां पे